बहुत सारे नीचे बांस के डंडे पड़े हुए हैं।

और एक लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है उस पर काफी सारा कुछ लिखा हुआ है और काफी गमले बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

यह एक बहोत बड़ा मॉल है।

यह एक बहुत बड़ी गैलरी दिखाई दे रही है।

टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

एक पोस्टर लगा हुआ है उस पर काफी सारा कुछ लिखा हुआ है।